इसमें बहुत सारी गंदगी भी पड़ी हुई है बेकार पड़ी हुई है। उसके साइड में हरियाली बहुत सारी पड़ी हुई है। मकान वो सब दिखाई पड़ रहे हैं।

बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें बहुत से लोग इधर उधर जा रहे हैं और ए सीढ़ी दिखा रही है और पीछे की तरफ टेंट का कलर बदले नजर आ रहे हैं।

कुर्सियों के कवर अवर बहोत सारे कुर्सियों पे कवर अवर पड़े है और डीजे उधर भी रखे हुए है एक तरफ लोग बेठे उठे उधर हुए --